यहाँ पे एक दुकान दिखाई दे रहा है जहां पे एक आदमी सामने की तरफ देख रह है

यहा पे बहुत बड़ा प्लेग्राउंड नजर आ रहा है जहा पर चार लड़किया मैराथन कर रहे है और ये मैराथन खेल रहे प्रेक्टिस कर रहे है लगता है --

मुझे एक ग्रीनरी नजर आ रही है और यहाँ पे एक दीवार है दीवार के सामने बहोत ज्यादा एवरग्रीन भी दिखाई दे रही है

यहाँ पे मुझे एक मशीन दिखाई दे रही है यहाँ पे एक आदमी को--काम कर रहा है जो कि किसी बिल्डिंग का काम चल रहा है ये मिस्तरी है

यहाँ पे एक बहुत बड़ीबुल्ल्डिंग दिखाई दे रही है जो कि बहुत खुबसूरत नजर आ रही है और बुल्ल्डिंग के सामने तीन बाइक मुझे दिखाई दे रही है

यहाँ पे एक बहोत बड़ी फैक्ट्री दिखाई दे रही है जिसके ऊपर से लिखा हुआ है अमूल अ वहाँ पे बहोत कुछ ची फैक्ट्री नहीं ये कुछ रेस्टोरेंट है यहाँ पे पिज्जा सबकुछ अवैलबल होगा

यहाँ पे एक स्वीट शॉप दिखाई दे रहा है जहां पे बहोत सारा स्वीट्स दिखाई दे रहे हैं और दाल भी हर किस्म कि नजर आ रही है बिस--

लड्डू गुलाब जामुन सब दिख रहा है और दाल भी पाँच छे किस्म कि है और यहाँ पे कोई बंदा नहीं नजर आ रहा है और यहाँ पे ये शॉप फ्रेम से बना हुआ है

अ है ऊपर से कुछ त्रिपाल भी उम्म लटका हुआ है और दूर साइड से एक बिल्डिंग भी बनी हुई है जो कि ब्लॉकस

और यहाँ ऊपर से कुछ रोड भी लगा हुआ है और ये तीनों ब्लैक कलर के हैं और ये वुडन फ्लोर वुडन कलर से सजाया गया है कुछ मिरर भी दिख रहा है

बहोत बड़ी खेत दिख रही है जहां पे खेती बाड़ी कम्प्लीट होगई है और सामने एक पेड़ भी बड़ा दिख रहा है

यहा पे मुझे बहुत सारे औरते दिखाई दे रहे है और सामने एक बोर्ड भी नजर आ रहा है और दूर दूर साइड से मुझे बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है। ये बहुत ही खूबसूरत है।

इस बुल्ल्डिंग के सामने छोटे-छोटे भी दिखाई दे रहे है और ऊपर से बदल भी बहुत ही खुबसूरत दिखाई दे रहा है सायद ब्लैक कलर का भी दिख रहा है और सामने एक रोड है|